पुल भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है यहां पर--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

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग बहोत ही बड़ी दिखाई दे रही है बिल्डिंग में कुछ पोल भी लगा दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।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

यहां पर एक फ्लाईओवर भी दिखाई दे रहा है यहां पर पुल व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी भी खड़ा हुआ दिख --

यहां पर दो दो चार बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट भी बने हुए--

वो हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग --

गाड़ियों का कलर वाइट कलर का भी दिखाई दे रहा है गाड़ियों का कलर ब्लैक --

मेरे सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारी मूर्ति भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

गिटार भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं यहां पर एक आदमी भी दिखाई दे रहा--

मेरे सामने एक बुक कंपनी दिखाई दे रही है जहां पर रॉयल का फ्रेंड गेस्ट हाउस की लिखा दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत--

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। इसका लोगो ब्लू कलर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहा पर भी एक पेड़ भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारे पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पे दिखाई दे रहे हैं।

में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में--

यहां पर बहुत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये सामने एक घर दिखाई दे रहा है घर में एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है यहां पर घर की में ग्रिल भी लगी हुई दिखाई दे रही है घर की --

यहां पर कुछ नाखून के पिक्चर भी लगे हुए दिखाई दे रहे है यहां पर एक सटर भी दिखाई दे रहा है सटर का कलर रेड कलर का दिखाई दे--